और जेंट्स भी है लेडीज भी है बच्चे भी है और बाहर एक दुकान भी है जिसके ऊपर काली पन्नी है और।

स्कूटी खड़ी है ये कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

और यह इस इस लड़के ने ईयर एयरफोन डाल रखे हैं गले में

बॉक्स से और ये खम्बे खड़े है और खम्बे के ऊपर पेट्रोल पंप ।

टंकी दिख रही है ब्लैक कलर की सामने खिड़की दिख रही है।

ये एक ग्राउंड का सीन है जिसमें काफी सारे झुबले लगे हुए हैं।

और ये झूले हैं इसमें--

को तो सिर्फ कैप ही दिख रहा है और ये स्काई ब्लू वाला लड़का टीशर्ट वाला लड़का फ़ोन में फोटो खींच रहा है।

यह एक कर्नाटका के होटल का अअअ व्यू हैं जिसके बाहर लिखा हैं होटल गेटवे कर्नाटका ।

सब है ये पेड़ भी हैं पेड़ पौधे भी हैं चेयर भी हैं बैठने के लिए--

एक साइड में रोड पे फोटो दिख रहा है या पे पेड़ भी है जो बिलकुल है।

ये एक लाइब्रेरी के बाहर का फोटो है।

एक पौधा भी है पौधे भी हैं मतलब इसमें ये काफी पुरानी जगह नहीं होती ऐसे खंडहर जैसी होती हैं।

ये किसी ग्राउंड के बाहर ग्राउंड के अंदर का फोटो है।

और ये एक क्रीम कलर का पेंट दीवाल पे नीचे ब्राउन कलर का है ।

लाइटें है टेबल रखे हुए है चेयर रखे है।

जिसमें गेट है ब्राउन कलर का--

क्रीम कलर की पुताई है क्रीम और ऑरेंज कलर ही ज्यादातर दिख रहा है इसमें --

शायद ये मंदिर के अंदर रूम है उसकी फोटो है मंदिर के अंदर की।

ये इस फोटो में घास दिख रही है काफी सारी--

काफी सारी औरते ही औरते दिख रही है इसमें छट पूजा की फोटो है।